एक आंटी के पास में बैठा हुआ है एक आंटी के बगल में बैठा लड़का हुआ है दो आंटियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है एक तालाब है यहाँ पर और नाईट शाम का टाइम है।

यहाँ पर दो तरह की मालाओं टंगी हुई है।

यहाँ उम्म गेंदे की और मोगरे की फूल की मालाए टांगाई है कुछ अंदर रखी हुई है।